गाड़ी के बगल में एक बाइक भी रखी हुई है। यह गाड़ी --

दूसरा चीता उसके बगल में बैठा हुआ है।

नीचे बहुत से लोग बैठे कर प्रोग्राम दे --

यहाँ एक गाय की चिकित्सा हो रही है।

चूहा एक हरी घास वाली जमीन में चढ़ रहा है ।

फोटो मे फेन्स के एक साइड पे बहुत सी हिरने है।